नीचे ज़मीन मे बहुत सारी हरी मिर्च पड़ी हुई है ।

यहाँ पर एक बगीचा बनाया गया है जिसमे बहुत सारे पेड़ लगाए गए है जिसमे से कुछ पेड़ो में ऑरेंज कलर के फ्लावर लगे हुए है और कुछ पेड़ो येलो कलर के फ्लावर लगे हुए है और साइड में--

एक सूखा तालाब है जिसके साइड में दो तीन टूटी हुई नावे डली हुई है।

यहाँ पर एक कमरा हैं जिस मे एक बेड हैं जिस के उपर वाईट कलर कि बेडशीट बिछी हुई हैं साइड मे एक टेबल हैं उस के बगल मे एक डस्टबिन रखा हैं टेबल के उपर इलेक्ट्रिक केटलि दो वाईट कलर के मग और काफि के पाउच रखे हुए हैं।

जिस पर बारकोड है और ग्रोसरी स्टोर है और उसमें ऊपर बी.एच.आइ.एम.यू.पी.आइ लिखा हुआ है नीचे फ़ोन पे वाट्सएप गूगल पे पे.टी.एम है और एक बारकोड है।

एक दुकान हैं लकड़ी के बहुत सारे कम्पार्टमेंट बनाया गया हैं दिन में और चित्र बहुत सारा सामान रखा हुआ हैं जैसे कुछ अगरबत्तियाँ रखी हुई हैं कुछ मेगी रैक हुई हैं कुछ बॉक्स मैं सेरेलेकस रखा हुआ हैं। और बहुत --

पर एक कमरा है जिसमे बहुत बड़ी सी मेट बिछी हुई है जिसमे लोग हाथ जोड़कर कर योग करते हुए दिख रहे है इसके लोगों के सामने एक ट्रैनर है जो इन्हे योग सीखा रही हैं।

यहां पर एक केक रखा हुआ है जो सफेद और लाल रंग से सजाया गया है केक पर लाल रंग के बहोत सारे हार्ट शेप बनाए गए हैं।

यहाँ पर एक गॅलेरी है जिस में कुछ कमरे दिखाई दे रहे है और कमरों से दीवार से सटी हुई काले रंग की बहुत साड़ी बेंच है जो की खाली पड़ी हुई है।

किया गया है इसमें छे सीढियाँ है और नीले रंग के पिलर से इसे सपोर्ट दिया गया है।